ओनर साहब के बगल में कोका कोला की फ्रीज भी दिख रही है और सीलिंग में फैन --

यह मस्जिद काफी खूबसूरत नजर आ रही है।

दो फल वाले एक सब्जी वाले जहां पर लोग जाकर के सब्जी और फल वगैरा खरीद रहे हैं।

जहां पर लोग डाक भेजते हैं जहां अन्य अन्य जगहों के अन्य अन्य प्रकार के डॉग आते हैं।

और वहीं जहां बैठने के पीछे एक लाइट रंग का कुछ फ्रेम भी नजर--

नोटिस भी टांगी हुई है और ऊपर में निम्न निम्न जगह लाइटें नजर आ रही है।

तालाब का दृश्य नजर आ रहा है जहां पर निम्न निम्न प्रकार की तीन नांव है।

इस जिम में एक पंखा भी है ए_सी भी है और एक घड़ी भी--

जहां पर दुर्गा देवी मंदिर भी है और एक आदमी अपने मुंह में दतुईन लेकर पीछे मुड़कर देख रहा है।

यह एक फोल का दृश्य नजर आ रहा है जहां पर अन्य अन्य प्रकार के पेड़ नजर आ रहे--

रास्ते के उधर थोड़ा सा मिट्टी का एरिया में जगह बना हुआ जहां पर लोग खड़ा हो सकते हो।

जहां से किराना सामान मिलता हो यहां अन्य अन्य तरह के मटेरियल सामान दिख रहे हैं।

यह एक इटा गिट्टी का दुकान या शॉप का दृश्य नजर आ रहा है।

जिसमें लिखा गया है डिवाइन ग्रेस आश्रम और यहां पर अच्छा दृश्य--

और सभी आदमी चल रहे हैं काफी अच्छा नजारा दिख रहा है।

एक साइकल दुकान का दृश्य दिख रहा है जहां पर निम्न निम्न प्रकार के साइकल नजर आ--

और ये दुकान के ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ है और दुकान में शीशा का स्लाइडिंग गेट भी लगा हुआ है।

यह निम्न निम्न प्रकार की साइकिले नजर आ रही है।

यहां बैठने के लिए चेयर तथा रखने के लिए टेबल भी है।

वहीं नीचे में दो बैंगनी रंग की दो टंकी नजर आ रही--

पर एक आदमी खड़ा होकर सब सब्जियों को सेट कर रहा है।

निम्न प्रकार के पेड़ तथा यहां पर हेयर कलर का जाल भी लगाया हुआ है।

यहां टैटू भी होता है वेलकम टू ईस्टर्न मॉल भी लिखा हुआ है।

यह काफी अच्छा रेस्टोरेंट लाल रंग का दिख रहा है ऊपर में रेस्टोरेंट लिखा हुआ है।

आ इस होटल में फैन ए_सी भी है।

यह एक होटल का दृश्य नजर आ रहा है जहां लोग सुबह का नाश्ता रात का खाना दोपहर का लंच खा सकते हैं।

होटल का नाम सपना होटल है और उस और होटल के बाहर निम निम प्रकारों के पौधे बिक रहे हैं।

यहां कुछ बच्चे वह कुछ औरतें वगैरा जहां डांस सीख रही है।

और दो बोतले लगी हुई है और बोतल के पास एक महिला बैठी हुई नजर आ रही--